छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं।

ये एक कार दिखाई दे रही है और कार का रंग सफेद है यहां पे नंबर प्लेट है और यहां--

दीवार है खिड़की है और यहां पे एक आदमी रिपेयर कर रहा है कार यहां पे एक कुर्सी है।

यहां पे बहोत सारे स्ट्रीट लाइट्स है पेड़ है और यहां पे बिल्डिंग है।

यहां पे ब्लू कलर का योग मैट है पिंक और रेड कलर का योग मैट है और यहाँ पे लाइट है।

बहोत ज्यादा पानी दिखाई दे रहा है यहां पे हरे भरे पेड़ है बड़ी बड़ी झाड़ियां दिखाई दे रही है।

केक्स दिखाई दे रहे हैं और यहां पे अंदर बहुत लाइट्स ।

यहां पे ग्रिल गेट है और यहां सीढ़ियां है।

छोटी पत्थर है पत्थर की बनाई हुई बड़ी बिल्डिंग है।

जी और यहां पे टेबल है कुर्सी है बहुत सारे लोग बैठे हैं।

ये छोटी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और यहां पे ग्रिल का गेट है।

यहां पे कुछ लोग गाड़ी पर ठहरे हैं और यहां पे बहुत सारी गाड़ियां हैं यहां पे एक लड़का--

चल रहा है पैदल और यहां मिट्टी है और यहां पे लाल कलर की कार है।

यहां लाल रंग की मिट्टी दिखाई दे रही है और चारपाई दिखाई दे रही है।

वो यहां पे बादल दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारी रेत दिखाई दे रही है यहां पे--